हैलो एवरीवन जैसा की आप लोग देख रहें हैं ये एक आपको जिम का व्यू दिख रहा है देख सकते हैं यहाँ पर बॉल रखी है।

लोग आए है सब लोग देख रहे होंगे इसे लोमडी कहेते है अपने लोग और देखो कितना अच्छे तरीके से ये देखिए पिक खिंचवा रही है इसको आप अंदाजा कर सकते है। ये--

कितना मस्त है और वी.सी. के साथ इसके बारे में हम आपको इससे आगे नहीं कह सकते यु आर ब्यूटीफूल पि --

हेलो गायज आप लोग जैसे की ये देख रहे हैं ये बिल्डिंग हैं बिल्डिंग के अंदर जनरेटर भी हैं और बहोत अच्छा सिस्टम हैं जीना भी बाजु में हैं बहोत सारे लोग इसमें रहेते हैं। आप लोग देखिए--

हैलो गायज़ आप देख रहै होंगे ये बत्तख है आप लोग इससे अंदाजा करके पिक को बताइये कितना मस्त पिक है और इसका लूक देखीये कितना अच्छा लूकिंग है।